तथा पिलर के अगल-बगल काफी बड़ी-बड़ी मशीने और भवन दिखाई दे रहा हैं जो की सफ़ेद एंड नीले कलर के है और तार भी नज़र आ रहे है।

एक मैदान है जो की हरा-भार है मैदान के बगल एक बस भी खड़ी जो की रोड पे खड़ी है।

मेज पे दो कंप्यूटर रखे हुए हैं तथा बूके और समान रखे हुए हैं तथा दीवार है दीवार पे भी कई पोस्टर लगे हुए हैं।

यह एक शॉप की दुकान है दुकान में काफी सारे आइटम्स रखे हैं तथा दुकान के सामने मेज भी रखा है मेज में काफी सारे बॉक्सेस --

हाउस भी दिखाई दे रहा है उसके बगल भी एक हाउस है हाउस के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है हाउस का रंग सफ़ेद और हरे रंग का है तथा नीचे गुलाबी है।

इस फोटो के अंदर एक बहुत बड़ा एयरोप्लेन दिखाई दे रहा है जो कि नीले और सफ़ेद रंग का है तथा उसके पास एक सीढ़ी भी है जिसपे कई लोग जा रहे है तथा --